एंड खंभे भी है यहां पे पेड़ भी है एक आदमी भिखारी जैसा साइकल ले के जा रहा हुआ है।

यह एक टेबल रखा हुआ है कांच का कटोरी है कप है एक इन्सान --

दो चेयर है एक लैपटॉप है पीछे ल आलर्म अलार्म का रखा हुआ है।

फूल ग्रीनरी है बड़े -बड़े पेड़ है सीढ़ी है देखने में काफी ।

बाकी खंबे है वायर है लाइट भी है ।

और अच्छा दिख रहा है मेरे को सब कुछ और बैकग्राउंड में सीमेंट उमेंट शायद कोई दुकान उकान लग रहा है मेरे को देखते है अभी।

यह मुझे बिल्डिंग दिख रहा है यहां पे पाइप है बाथरूम वाथरूम का जो पाइप निकलता है वो पाइप भी है यहां पे कांच के वो भी लग रहे हैं मेरे को।

यह एक जंगल दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे घास है पेड़ --